यहां पे दो आदमी और एक औरत बैठी हुई है एक लड़का है।

इसके साइड में एक आदमी एक बच्चे का बाल काट रहा है उसके पीछे चार लड़के बैठे हुए हैं।

इसके साइड में बहुत से हरे- हरे घास लगे हुए हैं।

यह एक हॉस्पिटल का दृश्य है।

आ इसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति बनाई गई है इसके ऊपर गुंबज भी है जोकि ग्रीन कलर का है।

इसके आगे तीन आदमी खड़े हैं। एक आदमी बाइक पर बैठा हुआ है। बाइक का कलर ब्लैक है।

यह एक रिक्शा है जिसके पीछे लिखा गया है जादूगर सम्राट शंकर सम्राट।

यह एक नदी है इसके साइड में बहुत सारे बास लगाए गए हैं।

इसने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ है। एक बाइक खड़ी है।

यहाँ पे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं इसके--

यह एक रोड का दृश्य है यहां पे बहुत सारे टेंपो जा रहे हैं एक टेंपो का कलर ग्रीन है।

यहां पे हमे एक मूर्ति दिखाई दे रही है इस के ऊपर एक लड़का सोया हुआ है मूर्ति का कलर वाइट है।